एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में जैनियों के भगवान जी रखे हुए हैं।

यह एक जैनियों का मंदिर है जिसमे भगवानों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं।

एक स्कूटी खड़ी हुई है एंड मोटरसाइकिलों के पास में व्यक्ति खड़े हुए हैं। बै -- और एक पास में ही एक बिल्डिंग भी हैं। मंदिर पर झंडा लगा हुआ है। मंदिर का एक गेट खुला हुआ है।

यह एक जैनियों का मंदिर है। मंदिर में भगवानजियो की प्रतिमाये स्थापित हुई हो रखी हैं।

मोज़े भी टंग रहे हैं। अस्सी प्रतिशत ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पे ।

एक अशोक क्लिनिक है जो बंद है। एक मकान बना हुआ है जिसके सामने एक महिला खड़ी हुई है। एक छतरी भी लग रही है। मकान पर --